और ऊपर एक गमला व कुर्सियां भी रखी हुई है।

और यहां पर कुछ व्यक्ति खड़े भी हुए है।

और बाहर की ओर बल्ले भी रखें है।

यह एक सिटी का दृश्य है।

और यहां का भी सारा जाम लगा हुआ है।

और यहां बहुत सी बोतलें भी रखी हैं व छत में लाइटें भी लगी हुई है।

यह डॉक्टर महेश चंद्रा का अस्पताल है।

वह मकान डिजाइन का बना हुआ है।

व पीछे गणेश जी की मूर्ति व कुछ पोस्टर भी लगे हुए हैं।

एक व्यक्ति कपड़े लेकर ठेले लगाए हुए--

यहां पर टीन लगी हुई है।

वह मकान भी है जहां कांच की खिड़कियां लगी हुई है।

यह एक इंडियन ऑयल पेट्रोल पंपा है।

और कुछ लोग पेट्रोल पंप पर तेल भी गिरवा रहे हैं।

और यहां बहुत सी ब्लैक कलर की कुर्सियां रखी हुई है।

यह मजदूर व्यक्ति है और यहां लेंटर गिर रहा है।

यह एक ऑफिस है और ऑफिस के अंदर एक कंप्यूटर रखा हुआ है।

और यहां पर बहुत बड़ी टेबल भी लगी हुई है।

और इसके बीच में दो पट्टी भी लगी हुई है पीछे एक दीवार भी है।

यह एक क्लासिक पिज्जा शॉप हैं।

जहां पर बहुत सारी सुफेद कलर की कुर्सियां व डाइनिंग टेबल लगी हुई है।

यह एक कॉलेज का दृश्य है जहां बहुत बड़े मकान में खिड़कियां बनी हुई है।

और साइड में एक दुकान के अंदर बहुत सारी कंचीड लाइटें लगी हुई हैं।

यहां पर बहुत सारे पुरुष व महिलाएं कुछ सामान लेकर खड़ी हुई है।

आगे एक कांच की खिड़की व लाल गेट लगा हुआ है।

और यहां ब्लैक कलर की ग्रिल लगी हुई है।

और यहां पर एक टेंट भी बना हुआ है।